इस पिक्चर में यहां पर हमें दिख रहा है यहां--

ये एक सिनेमा हॉल है और यहां पर बहोत--

मिरर में फोटो दे रहा हैं।

यहां पर एक ड्रम --

और यहां पर बहोत सारा सामान।

नजर आ रहा है यहां पर।

और पीछे बहोत बड़ा --

यहाँ पर एक पोस्ट बैंक है यहाँ पर--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

यहां पर दिख रहा--

में बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है।